यह एक राशन की दुकान है। यह दुकान बहुत ही बड़ी है। यहाँ ग्राहक सामान लेने आये हुए हैं।

यह एक जंगल है इस जंगल के बीच में एक रोड हैं जो काफी चौड़े है यह जंगल काफी हरा-भरा लगता है।

यह ऊपर तल्ले में रहने की सुविधा भी है जो काफी बड़ी बिल्डिंग है।

यहाँ कपड़ा आयरन किया जाता है धोबी में मास्क लगाई आयरन से कपड़ा को इस्त्री कर रहे हैं।

अपने पेट तक पैंट को रखे हुए हैं। आयरन पकड़े हुए हैं।

यह एक रूम है। यह रूम को बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है। इस रूम में टेबुल कुर्सी सोफा सभी लगाए गए हैं। जो देखने में बहुत अच्छे है।

यह एक गाँव हैं इस गाँव में बहुत अच्छा एक रोड है एक कंपाउंड है जो काफ़ी बड़े हैं ।